और हमें इसके साथ में एक ऊंची चोटी सी दिखाई दे रही है यहां पर--

और यहां पर एक साइकिल भी खड़ी की गई है।

और यहां पर हमें एक आदमी भी काम--

प्रिया पर किसी ने जिम का इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो की जस्ट करने की एक्सरसाइज है और--

हमें यहां पे एक बोतल भी रखी दिखाई दे रही है और यहां पे एक क--

इस फोटो में हमें बहोत बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं जोकि ज्यादा सामान लोड करने के लिए यूज किए जाते हैं यह--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

खाना रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें एक टेबल एक प्लेट में चावल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो की बिरयानी लग रही है।

इस फोटो मे हमे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है।

स्टडी विजा वर्क परमिट टूरिस्ट विजा सुपर वीजा --

जो कि बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा--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

बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहां पर हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो की एक्टिवा पर बैठा है और उसने पिंक कलर की --

यह बहुत ही शानदार दिख रही--

चिड़िया भी दिखाई दे चिड़ी दिखाई दे रही है जो कि ब--

कपड़े पहरे हुए हैं और सभी ने अपने-अपने चेहरे पर मास्क लगा रखी है और सब ने अपने चेहरे पर सर पर एक टोपी भी ओढ़ रखी है।

महिलाओं और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और यहाँ सभी पानी में--

यह फोटो किसी कंपनी की दिखाई दे रहीं हैं जो की बहोत ही बड़ी कंपनी दिख रही है।

वो अपनी ऑटो पार्क करता हुआ दिखाई दे रहा है।